और दो लड़के उधर बैठे हुए एक लड़का बैठा हुआ है।

और हम वॉलपेपर्स देख सकते है कुर्सी देख सकते है.

कई मर्दो को देख सकते है कई बच्चों को देख सकते हैं।

खड़े हुए है और हम बहुत सारे लोगो के सामान को देख सकते है और हम रिक्शे को देख सकते है। एक आदमी ज उधर सफाई कर रहा है।

इस चित्र मे हम देख सकते है की एक पार्लर है जहाँ पे लिखा हुआ है ब्लू स ब्लूसिंग टन --

और हम बहुत ही अच्छे ब्रिजेस को देख सकते है।

आ जो लोग जंगल है ये जंगल है इस जंगल मे बहुत ही बड़े-बड़े पेड़ है।

हम बहुत सारे गाड़ियों को देख सकते है और हम पीछे--

गानों गाने के लिए डाल रहै है।

ऊपर में बिजली के तारों को देख सकते है हरे रंग के पेड़ो को देख सकते है।